सेल्फी ले रहे हैं पीछे पहाड़--

गाड़ियां खड़ी हैं बारिश--

है फंक्शन चल रहा है यहां पर--

एक मंदिर है और पीछे बहुत सारे लोग नजर आ--

चीज देख रही है यहां पर बहोत सारी फोटो --

जैसे कि गंगा नदी में दो लोग--

यहां पर दो व्हाइट बोर्ड --

वो इस फोटो में--

रहे हैं यहां पर--

बहोत सारी चीजें है बहोत--

फोटो में देखा जा रहा है--

छाबरा टेलीकॉम है और यहां पर बहोत--

यहां पर बहुत ब्लू कलर --

इस तस्वीर हम --